कुछ दिख रई है | कुछ बास्ता दिख रई है |

ये एक पार्क दिख रही है। मतलब की बच्चो की खेलने की चीजे दिख रही है।

दो लड़के खड़ी हुई दिख रही है। एक लड़के की सिक्स पैक दिख रही है। कुछ जिम की चीज़ें दिख रही हैं। एक पंखा दिख रही है।

इसमें एक गेट दिख रही है। एक लेक ब्रिज दिख रही है। पानी दिख रही है।